उस पिंजरे के ऊपर पैकेट्स रखे हुए हैं जिसमें ये पेट के खाने के लिए समान है।

संस्था के बाहर एक लाल रंग का गेट है।

इधर आसपास में दो तीन बुजुर्ग आपस में बात कर रहे हैं।

यह एक पेंट की दुकान है इसमें बहुत सारे पेंट के डिब्बे पड़े हैं।

कुछ इधर कुछ डब डिब्बे कागज के भी हैं।

यह एक जंगल है इस जंगल में पेड़ हैं पेड़ सूखे हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें दो तीन बसें दिखाई गई हैं।

इसमें कुछ ऑटो रिक्शा भी दिखाए गए हैं।

कुछ लोग ऑटो की मांग कर रहे हैं।

इसमें बहुत सारी फाइलें बिखरी पड़ी हैं।

इसमें दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई है।

एक इसमें सामने अलमारी है उस पर तस्वीर है।

स्कूल का नाम ग्लोरियस पब्लिक स्कूल हैं।

यह एक जिम का सीन हैं इसमें दो ग्रीन रंग के बोर्ड लगे--

यह एक लकड़ी की दुकान है।

इसमें एक सामने दरवाजा है एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है गेट का रंग काला है।

इसमें एक कागज की लंबी टेप दिखाई दी है।

एक ट्रक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहा है।

दुकान में कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं।

इसमें बाहर लकड़ी कि एक पौड़ी बनी हुई हैं।

शिक्षिका ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई है। बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं।

कुछ बच्चे कागज से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

टोल टैक्स वाले कार का टैक्स ले रहे हैं इसमें एक सड़क दिखाई दी है।

सड़क के फुटपाथ पर लोहे के गेट खड़े हैं इसमें एक सामने काले रंग की दीवार है।